टेंट है तथा बिल्डिंग के सामने विभ्भिन प्रकार की बस खड़ी हुई है तथा बहुत प्रकार के लोग भी हमे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं तथा एक पोस्टर में साई बाबा की मूर्ति हमें बनी हुई दिखाई दे रही है।

सामने हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है इस बिल्डिंग हमे सलूजा एकेडमी लिखा दिखाई दे रहा है तथा इसके सामने दो बाइक खड़ी दिखाई दे रही है।